जहां पर विंडोज़ दिख रही है और लाइटें लगी हुई है सामने कुछ--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

जिनमें कुछ लगाया गया है जो काफी सुंदर दिख रहा है और काफी खुला दिख रहा है।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

व्यू काफी सुंदर दिख रहा है बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है।

कमरे में काफी ज्यादा लाइटें लगी हुई है आ न और दरवाजे और खिड़कियां दिख रही है।